और आगे की तरफ एक जाली वाला गेट भी लगा हुआ है।

पीछे की तरफ बहुत ही चमकदार और।

और कुछ गाड़ियां रोड पर आने जाने का कार्य कर--

ये इस तस्वीर मैं एक ऑफिस नजर आ रहा हैं।

यहां पर बहोत ही अच्छी कतार और साफ सफाई का प्रबंध--

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा--

एक गेट के सामने दो गाड़ियां भी खड़ी हुई है और यहां पर--

बहोत सुंदर और अच्छी तरीके से सजावट भी की गई है।

और कुछ व्यक्ति फल क फसल काटने का कार्य कर रहे --

खड़ी हुई हैं और बाहर एक रोड भी बनाया गया--